पीछे की तरफ कुछ घर बने हैं और कोई बड़े पेड़ भी हैं।

और बहुत से लोग यहां काम कर रहे हैं जिन्होंने।--

अलमारी के सामने की तरफ बहोत से पोस्टर और हैंगर लगे हुए हैं जिनमें सामान रखा हुआ--

यहां पर एक मूर्ति बनी हुई है।

अंदर की तरफ भी कुछ लोग हैं आइड साइड में बहुत सी दुकाने भी यहां है।

जो ब्लू कलर और ग्रीन कलर का है।

आसपास बहोत सारा दूसरा सामान भी है कांच का एक पानी का ग्लास रखा है।

और इतने ऑरेंज टी शर्ट पहनी है कैप लगाई हुई है।

और पीछे की तरफ बहोत से पेड़ भी लगे हैं।

यहां पर एक रास्ता है रास्ते के दोनों तरफ बहोत--

यहां पर एक शॉप है शॉप में रेड और वाइट कलर की बहोत सी अलमारियां हैं।

इस पे बहोत सी मालाएं लगी हुई है और बहोत से लोग ऊपर की तरफ बैठे है।

यहां पर एक घर बना हुआ है जो--

यहाँ पर एक ग्राउंड है और ग्राउंड में--

यहां पर एक वाइट कलर की टेबल है जिस पे बहुत--

यहां पर एक रूम है जो व्हाइट कलर का है जिसमें येलो और ब्लू कलर की लाइट --

और पीछे की तरफ घना अंधेरा है।

और पूरी स्कूल के गेट अभी बंद है और यह पूरी --

और यहां पर एक बाइक खड़ी है एक साइकिल खड़ी है पीछे की तरफ कुछ घर भी बने हुए हैं।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में सामने की तरफ बहुत सा सामान--

पीछे की तरफ बहोत से बड़े पेड़ भी यहां पर लगे हुए हैं।

रखी हुई है और इन्हें व्हाइट और रेड कलर के बैलून से पूरे जिम को सजाया गया है।

इन पर पेड़ लगे हुए हैं आगे की तरफ कुछ कोहरा भी है।

दूसरा सामान रखा है इसे कलरफुल बलून से डेकोरेट किया--

रेड और पिंक कलर का काउंटर है और बहोत सारे यहां पर स्पोर्ट्स कार रखी हुई है।